और दूसरी साइड में भी एक जीना दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे टैबलेट और मोबाइल --

ये कारों का एक वर्कशॉप है यहां पे कार रिपेयर होती है एक कार रिपेयरिंग के लिए यहां पे खड़ी हुई है।

यह एक लैपटॉप की दुकान लगती है।

और यहां पे कुछ लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं।

नीचे हरे कलर का मैट पड़ा हुआ है सारे में।

और पास में हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है।

पास में कोई लड़का भी खड़ा हुआ है बाइक पे--

यह किसी बिजली की दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ आदमी यहां पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

में फूलो के माला पे बैठे हुए है।

और ऊपर लाइट भी लगी हुई है और एक सोफा भी साइड में दिखाई दे रहा है।

जिम के अंदर बहोत सारे डम्बल दिखाई दे रहे है रखे हुए छोटे बड़े बड़े छोटे--